ये बैंक सुपौल जिले मै स्थित हैं | सुपौल जिले के बैंक हैं ये |

लड़के जा रहे हैं एक साईकल से जा रहे हैं | एक बोर्ड लगी है पीछे में |